तीन बच्चे भी जाते हुए दिख रहे हैं और इसमें एक कुर्सी भी पढ़ी हुई है और इसमें इसके बाहर --

स्कूल की बसें भी खड़ी हुई दिख रही हैं और एक वैन भी खड़ी हुई है।

और इसके चारो तरफ काफी इ इ यह क्या बोलते है इसे --